इस तस्वीर में एक बर्फ से लदी हुई जगह का द्रश्य दिखाया गया है जोकि एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पे बहुत --

इसके अलावा वहाँ पे एक बहुत विशालकाय पेड़ है और बहुत लोग वहाँ पे नतमश्तक होने जा रहे हैं।

इस तस्वीर में एक नदी के किनारे का द्रश्य दिखाया गया है किनारे पर बहुत छोटे-बड़े पौधे लगे है जोकि जंगली पौधे लग रहे हैं।

इस तस्वीर में एक योगा के मैदान का द्रश्य दिखाया गया है जहा पर बहुत सारी युवतिया नीचे कपडा बिछा कर उसके ऊपर योगा अभ्यास कर रही है।

इस तस्वीर में एक बन रही ईमारत का दृश्य दिखाया गया है जहाँ पे आसपास बहुत बड़े -बड़े मिटटी के ढेर है और अभी ईमारत की--

इस तस्वीर में एक खाली सड़क का दृश्य दिखाया गया है सड़क की तस्वीर कुछ साफ़ नहीं है और उसके दोनों तरफ बहुत बड़े -बड़े पेड़ हैं ।

इस तस्वीर में एक लड़के को दिखाया गया है जोकि एक शादी के समारोह को दखने के लिए आया है लड़के ने नीले रंग --